यहाँ पर एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है | सामने उप --

और सामने की तरफ तीन बकरियों को भी देखा जा सकता है एक बकरी ऊपर चढ़ी हुई है --

और दूसरी तरफ में कुछ हलके फुल्के पेड़-पौधे लगे हुए नज़र आ रहे हैं ।

पूरा देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

ऊपर की तरफ में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है बहुत सारी लाइटें सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

एंड सामने की तरफ में कुछ न आईने भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा-सा पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है व कैलेंडर है।

जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी हुई हैं।

और सामने की तरफ में कुछ मॉनिटर रखा हुआ भी देखा जा सकता है कुछ चेयर्स लगी हुई दिखाई दे रही हैं पीछे खिड़की है।

ज्यादातर मछलियों को कैरेट के अंदर करके रखा गया है और कैरेट के अंदर भी उन्हें प्लास्टिक के अंदर करके रखा गया है।

व्यक्ति अपने हाथ को नीचे किये हुए --

दरअसल यह ए.टी.एम. नहीं है यह एक बैंक की जैसा कुछ लग रहा है सामने कुछ सामाने रखी हुई है।

अगल-बगल में और भी कुछ मकानों को देखा जा सकता है ऊपर नीला आकाश है लाइट के तार को भी जाता हुआ साफ देखा जा सकता है।